उसके बगल में एक बहुत बड़ा तालाब है जिसके बीच में बहुत सारे पेड़ हैं।

बगल में कपड़ा का थैला लगा हुआ है एक दुकान है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है ।

पेड़ है अगल-बगल बहुत बड़ा-बड़ा बिल्डिंग हैं बिल्डिंग का कलर वाइट है पेड़ का कलर ग्रीन हैं।

कुछ आदमी मछली खरीद रहे हैं कुछ बेच रहा हैं एक पानी का बोतल रखा हुआ है उसके बगल में कुर्सी है कुर्सी --

यह एक स्कूल है। यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं।